यह किसी पब्लिक प्लेस का फोटो है और इसमें एक आदमी खड़ा है जो सफ़ेद स सर्ट पहनी हुए है ब्लैक जाकेट भी है बेग भी टाँगे हुए है जुत भी पहने

हसीना भी कुछ अलग टाइप के एक पीछे आदमी भी बैठा कुछ गेट टाइप का भी दिख रहा बो आदमी कुछ लिख रहा हैं शायद चेयर पर बैठकर अपने पैरों पर कॉपियों का पेन से कुछ लिखने वाला है।

ये दु रो का फोटो है ये कुछ घर टाइप का बन रहा है और ये दो ड्रम भी रखे दो आदमी भी खड़े है दो ऊपर चढ़े है और एक उनकी कुछ हेल्प कर रहा है पीछे --

सफेद रंग के भी कुछ फुले है रेड कलर और येलो के भी जो काफी अमेजिंग पर्दा भी दिख रहा है पीछे मुझे बैकग्राउंड में काफी--

ये किसी डांस एक्सरसाइज का फोटो है या इसमें पीछे ए.सी लगा है रूम का फोटो है खिड़कियां दिखायी दे रही है दरवाजा भी है और लाइटस भी लगी है एक ब्लू लाइट दिखायी दे रही है आंगे --